ये मंदिर है। मंदिर में कुछ श्रद्धालु का भीड़ लगा हुआ है जो कि --

इसको देखने से ऐसा लग रहा ये कोई खान है खान में कुछ वर्कर काम कर रहे है कुछ सामान को पैक कर रहे है।

इ पटना मेट्रो का जो की अभी निर्माण चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़क पे तो उसका कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

जो कि इसके बगल में एक अ --

और उसके आगे कुछ बैनर लगा हुआ है।

अ ह जोकि इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से अंदर --